यह दिखाया जा रहा है कि यहां पर एक ठो बड़ा बिल्डिंग है इस बिल्डिंग का जो कलर है वाइट कलर का है।

और ये जो रूम का कलर ब्ल्यू कलर है और यहां पर दोनों आदमी मास्क लगाए हुए है वहां पे स्विच बोर्ड लगाया हुआ--

ये जो ऐसी बड़ा का बड़ा फील्ड है इस फील्ड में बहुत सारा घास रोपा हुआ है छोटे छोटे--

सीन मे यह दिखाया जा कि बीच मे एक ठो मन्दिल है इस मन्दिल मंदिर में मंदिर का जो कलर है वो यलो कलर का है।

इन आदमी है जो रूम को साफ कर रहे हैं दीवाल पर बहुत सारा वहां पे अच्छे तरह का डिजाइन बनाया हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है।

अंदर में भी बहुत सारा रखा हुआ है सूप रखा हुआ है अंदर में रैक बना हुआ है उसमे लोटा रखा हुआ है बहुत सारा ऊपर में गिलास --

नीचे खोद ऊपर से खोदते खोदते बहोत नीचे आ गया है नीचे में पानी निकला हुआ है वो खारा पानी।

इस दृश्य में दिखाया गया है कि यहां पे एक बड़ा सा नदी है।

कुछ लोग बैठे हुए हैं सीढ़ी पे ऊपर में एक मंदिल है मंदिल का कलर है व्हाइट उसमें ग्रीन कलर का बहुत सारा खिड़की लगा हुआ है और ऊपर में बहुत सारा वहां पे पेड़ है।

एक यहां पे दिवाल बना हुआ हैं उसमें चार खंबा गड़ा हुआ हैं उसमें कुछ लिखा हुआ है और ऊपर में घोड़ा बना हुआ हैं और रथ लगा हुआ हैं बैठने के लिए।

अगल बगल दोनो तरफ से लोहे के बनाया हुआ हैं रेलिंग दिया हुआ ऊपर में करकट का है यहां पे बहुत सारा बोल में लगाया हुआ हैं।

और शीशा लगाया हुआ है बहुत सारा और यहां पे बहोत बड़ा बिल्डिंग है।

इस इमेज में यह दिखाया गया है कि यहां पर एक बड़ा मॉल है इस मॉल के बाहर एक ठो सोफा यहां पे बनाया हुआ है इसपर गद्दी है वाइट कलर का एक तकिया रखा हुआ है।